यहा एक बोहउत पुरानी गुफ्फा टाइप दिखाई दे रहा है।

और एक टेबल पे कुछ ट्रॉफी राखी हुई है और सेलब्रैशन का बैनर लगा हुआ है।

कुछ लाइटिंग गई है और हूँ उन लेडिज पे पीछे एक देवर है जिसपे कॉलऔरफुल फ्लावर्स लगाए गए हैं ।

यहा बोहउत बारी कच की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के आगे एक गणपती की मूर्ति राखी हुई है।

यहा एक बोहउत बारा हल दिखाई दे रहा है | हल मे फन कुछ लीघटस है और बोहउत से लरकिया योग कर रही है | जोकी सब लाइन मे रहे के एक साथ योग कर रही है।

यहा एक रूम है रूमों मे बेड है बेड पे एक बाग और नूज़्पैपर राखी हुई है और देवर पर एक घरी लटकी हुई है।

और बेड पे इक आदमी लेता हुआ है जिसके दोनों पाओ को चोट आई है दोनों पाओ को बैन्डिज है|

और कुछ ग्राहक शॉप मे खरीदी करने के लिए आए हुए है।

और उस बसेस में कुछ अन्दर लोग बैठे हुये दिखाई दे रहे हैं और बसेस के बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं।

यह एक बुक की शॉप हैं उसमे बहुत से बुक्स रखें हुए हैं और शॉप में पूजा चल रहीं हैं।

कुछ भगवान की मूर्तियाँ फोटोज रखें हुए हैं और पूजा की सामग्री हैं एक आदमी हाथ जोड़के खड़ा हैं।

यहां एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें प्रोग्राम के लिए डेकोरेट किया गया है और सोफे के पीछे एक गोल्डन कलर दीवार दिखाई दे रही है।